अ सीलिंग पर बहुत सारे पंखे लगे हुए है।

आ बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

अ बैठने के लिए बेंचेस लगे हुई हैं।

और तीन बर्निया रखी हुईं है।

अ गमले लगे हुए हैं। पौधे लगे हुए हैं। घास उगी हुई --

रास्ते पर ब्लॉक लगे हुए हैं।

अ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ लगे दिखाई दे रहें हैं।